यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान है।

नदी के बाजू में बोहोत सारी हरे रंग के छोटी-छोटी घास लगी हुई है।